इसलिए यहां पर लोहे के स्टूल लगी--

यहां पर एक गोल सर्कल बना हुआ है सर्कल के बीच में एक खंबा लगा हुआ है और उसके नीचे बहोत सारे अं --

बाहर ग्राउंड के अंदर छोटे छोटे पत्थर पड़े है और सफेद कलर की धारियां बनी हुईं है अंदर की साइड ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड में हरियर--

इस तस्वीर के अंदर एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है शॉप के अंदर बहुत तरह-तरह के कपड़े रखे हुए है।

इस फोटो के अंदर सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के आगे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कंकड़ पत्थर पड़े हैं एक आदमी जा रहा है आदमी के पीछे--

दुकाने दिखाई दे रही है इधर पीछे एक होटल बनी हुई है ऊपर नाम लिखा हुआ है बाटा बी_ए --

यहां पर सड़क के ऊपर बहोत सारे लोगों की भीड़ है कुछ महिलाएं हैं कुछ आदमी हैं ये ढोलक बजा रहे हैं और --

और बोहोत सारे आदमी खड़े है कुछ औरते खड़ी है बीच में एक महाराज बैठा है और इस दीवार के पास में और सामान --

यहां पर बहोत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और एक बहोत ही बड़ा पहाड़ है।

और पौधों के बीच में इधर नीचे छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं पहाड़ के नीचे है।

यहां पर इस तस्वीर के अंदर बीच में एक बेंच पड़ी है बेंच के ऊपर कुछ बॉटल वगैरा पड़ी है सॉस का डिब्बा पड़ा है।

इस तस्वीर के अंदर एक रैलरी पटरी बनी हुई है सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि दो तीन मंजिल ऊंची है।

ये जो बाहर आदमी खड़ा है इनके नीले कलर की--

और पीछे बहोत सारे खंभे लगे हुए हैं नीचे टाइल लवी दी हुई है।

और पीछे बहोत सारे घर बने हुए ऊंचे-ऊंचे बंगले बने हुए है बीच में लोहे के कुछ गैरेज लगे हुए है और कुछ चार्ट बने हुए यहां पर --